ऊपर में कई सारे लाइट लगे हुए हैं।

ए_सी भी नजर आ रहा है।

आदमी ने शॉल ओढ़ा हुआ है।

टेबल ग्लास का बना हुआ है।

लोगों की फेस को ब्लर किया हुआ है।

पीछे लाल रंग का कारपेट बिछाया हुआ है।

अगरबत्ती भी दिख रहा है।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

नीचे लाल रंग का सीट भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है।

वॉल का कलर रेड है।

आदमी के फेस को ब्लर किया गया है।

होटल में कई सारे बैठने की जगह है।

इस तस्वीर पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।